आ रिसेट से पूरा काम किया हुआ है बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है ये इसमें ब्लाक कलर का गेट लगा हुआ है स्टील का स्टील गेट है ऐसे स्टील ।

ये बिल्डिंग विवेकानंद स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है।

यह बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है ये वाइट कलर का है तीन चार तल्ला फ्लोर है इसका सामने का पोजीशन देखिए कितना अच्छा--

वाइट कलर का बिल्डिंग है नीले का पाउडर है सामने से जाने का इधर से दरवाज़ा है गेट है इसपे दो तल्ला बना हुआ है इसमें ए.सी वगेरा सब सेटिंग किया हुआ।

ये मंदिर यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं |